कच्ची दीवाल है जिसमें गेट लगा हुआ है।

अभी लग रहा है कि टिन शेड है टिन शेड कच्चा है पाइप लाइन डली हुई है लोहे का छड़ है।

यहाँ पर हुआ हैं और बच्चे हैं और पेड़ लगे हुए हैं।